साइड में एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क का कलर मुझे ग्रे दिखाई दे रहा है यहां पर से मुझे एक लड़का जाते हुए दिखाई दे रहा है जिसने मास्क का प्रयोग किया गया है।

पीछे की ओर एक पेड़ दिखाई दे रहा जो की बहुत ही हरा भरा दिखाई दे रहा है। यहां पर मुझे कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं। घर के नीचे कुछ दुकान दिखाई दे रही है। और यहां पर बहुत सारे घर एसे दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर प्लास्टर किया गया वह नहीं है।